ये एक सफेद रंग की इमारत दिखाई दे रही है इसके ऊपर कई सारे बत्तियां जल रही हैं बाहर की तरफ सीढी है।

ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये देवी दुर्गा माता की प्रतिमा है हनुमान जी की प्रतिमा है शिव जी की प्रतिमा है।

ऊपर झूमर लगा हुआ है और नीचे की तरफ टेबल लगा हुआ है टेबल के बगल में चेयर्स लगा हुआ है।

दिखाई दे रहा है वस्तु वो एक मीनार है जो की--

और सामने की तरफ एक बड़ा पर्दा लगा हुआ है सफेद कलर का।

इस तस्वीर में एक सब्जी मंडी दिख रहा है और यहां पे कई सारे सब्जियां लगी हुई हैं बिकने के लिए।

दो सीढ़ियां हैं यहां पे और बढ़िया से सजाया गया है।

और एक दुर्गा माता की मूर्ति है और दुर्गा माता के बगल में एक और मूर्ति है।

इस तस्वीर में एक नारंगी रंग का धार्मिक स्थान दिख रहा है और यहां बगीचा भी है पेड़ है।

तस्वीर दिखाई दे रही है एक सेविंग फर्निस्ट हाउस है हाउस के बाहर एक बाइक खड़ी है।

और दो फोम दिखाई दे रही है जिसमें मछली रखा जाता है।

ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है ये एक विद्यालय का क्लास रूम है।